यहाँ पर मोहन ठाकुर लॉ कोलेज है।

फूटबाल है कपड़ा भी रखा हुआ है रंग-बिरंगा कपड़ा है ।

आसमान दिख रहे हैं दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। फील्ड में उम घांस उगे हुए हैं।

यहाँ बहुत सुंदर बिल्डिंग है। इलेक्ट्रॉनिक तार दिख रहा है।

उगे हुए हैं दो आदमी हैं एक ही पेड़ --

फोर लाइन है। बोर्ड टंगा हुआ है। रोड पे बस चल रहा है। बस --

के आगे मे एक आदमी खड़ा है बगल मे ठेला लगा हुआ है --